और एक इलेक्ट्रिक पोल है और उसमें जो कुछ तार भी दिखाई दे रहे है।

और बहुत जरा फिर भी दिखाई दे रहा है।

सामने में भी बहुत लोग चलते हुए दिखाई दे रहा है और कुछ पोस्टर लोग भी है।

तीन लाइट बग दिखाई दे रहा है और वो भी वाइट कलर में है।

येलो जो तार भी दिखाई दे रहा है और कुछ प्लास्टिक भी टांग के रखा हुआ है।

हमे जो बहुत लोग दिखाई दे रहा है एक लड़का जो बैग बुक के है।

और वो लोग का पीछे में जो एक छोटा सा घर है और वो उसको जो अच्छा से डेकोरेशन कर रहा है अलग अलग कलर से।

और उसका नाक का सामने में भी कुछ रस्सी से बांध के रखा हुआ है।

पैकेट में जो लाइट बन का वो पिक्चर भी दिखाई दे रहा है।

कुकर का उसका पैकेट भी है और इस में जो कुकर भी दिखाई दे रहा है।

यहा मे जो बहुत ज्यादा गारी दिखाई दे रहा है और गारी का साथ साथ कु बहुत लोग जो चलते हुए दिखाई दे रहा है।

और एक लड़की है और एक लड़का है और उनका पीछे में भी एक घर दिखाई दे रहा है।

कुछ स्टेप भी दिखाई दे रहाई और उसका पीछे में जो बहुत जरा पेड़ पौधे भी है।

वो भी ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है।

और कुछ लाइट बल्ब भी है और कुछ पाइप भी दिखाई दे रहा है और घर जो वाइट कलर में है।

एक शर्ट भी दिखाई दे रहा है और वो जो उसका सामने में जो एक त्रिपान भी है।

राउंड पॉट्स भी दिखाई दे रहा है।

कुछ पोस्टर भी दिखाई दे रहे हैं घर का कलर जो वाइट में है।

ये जो एक बड़ा सा रूम है और रूम का अंदर में जो कुछ चेयर भी दिखाई दे रहा है।

ये जो एक बड़ा सा दुकान है और दुकान का अंदर में जो दो लड़का दिखाई दे रहा हैं और एक लड़का जो चेयर में बैठा हुआ है।

यहां में जो बहुत ज्यादा मच्छरी दिखाई दे रहा है और वो जो अलग अलग साइज का है।

चलो एक मेजर बैठा हुआ है और उका सामने में एक के जी नापने वाला मशीन भी दिखाई दे रहा है।

घर का कलर जो वाइट में है और कुछ फैन भी दिखाई दे रहे लाइट बल भी है।

कुछ पोस्टर भी दिखाई दे रहा है बहोत ज्यादा खिड़की भी है उसमें जो शीशा लगा हुआ है।

उसके पीछे में भी एक लड़का बैठा हुआ है उसको सामने में एक चेयर भी है।

हमें जो दो ऑटो रिक्शा दिखाई दे रहा है और उसका पीछे में भी कुछ पोस्टर रखा हुआ है।

यहां में जो एक रास्ता दिखाई दे रहा है और यहां में जो बहोत ज्यादा गाड़ी भी दिखाई दे रहा है।

कुछ तार भी आगे दिखाई दे रहा है बहुत ज्यादा पेड़ पौधे भी है और वो भी जो ग्रीन कलर में है।

की भी खोल के दिखाई दे रहा है कुछ कपड़ा भी टांग के रखा हुआ है।